ओर लाइटे बहुत सारी दिखाई दे रही है। बहुत सारी यहां पर कार हे जो दिखाई दे रही है और पेड़-पौधे भी यहां बहुत सारे दिखाई दे रहे हैं और --

ओर खंभे वगैरह भी यहाँ पे लगे हुए हैं ओर सीडी वगैरह जैसे भी लगी हुई है ओर घर दिखाई दे रहा है येलो कलर का।

ये ऐसा लग रहा है जैसे किसी के शादी का डेकोरेट किया गया है| एक बोहोत बड़ा पोस्टर लगा हुआ है और अंदर जाने के लिए गुब्बारे बलून्स वगैरह लगे हुए हैं | एक चेयर रखी हुई है।

शादी वादी का डेकोरेशन किया गया है यहां पे मतलब कोई बेठा हुआ है जिसके कान में इयरफोन जैसी लगी हुई है।

ओंर परदे लगे हुए हैं। लाईटे बहुत सारी दिखाई दे रही हैं। कोई खड़ा हुआ हैं यहां पे।

और एक झूमर जैसा बना हुआ है और पर्दा जैसा लगा हुआ है और --

यहाँ पे एक स्टेज जैसा बना हुआ है एक एल.सी.डी. जैसी लगी हुई है और टेंट लगा रहे हैं दो तीन लोग एक बीच में बैलून रखे हुए हैं एक बाल्टी टाइप मे रखी हुई है।

और ये मतलब बहोत सारा टेंट ऊपर भी लगा हुआ है। नीचे भी मतलब बहोत सारे टेंट जेसे लगे हुए हैं। स्टेज जैसा बना हुआ है।